न हरा हरा है सब सारे नेचुरल हवा--

ये बहोत ही अच्छी दुकान है बहोत ही सब सब समान मिल जाता है यहां पे आने पे।

आगे में तो नदी भी है मस्त है बारिश तो मस्त है यहां पे--

सारे अच्छे जगह हैं ये बहोत ही अच्छा जगह है यहां पे घूमने में बहोत ही अच्छा लगेगा--

यही गाड़ी उड़ी का दुकान जितने भी मतलब डेली यूज के लिए समान होता है।

सारे सारे कुरकुरे सारे बच्चों के लिए चॉकलेट ये सब मिलता है।